ऐसे दिखाई दे रहा होगा जैसे कि कुछ था ही नहीं और आपको इस बारे में क्या कहना है आप मुझे इसमें देख के--

वो भी यह चीज ऐसे दिखाई दे--